जहां नदी के ऊपर बने पुल पर एक साइकिल सवार--

और व्यक्ति इस पुराने घर को देखता हुआ दिखाई दे रहा है।

दीवार जो है टूटी फूटी अवस्था में दिखाई दे रहा है--

नीचे एक्सिस बैंक का एक ए_टी_एम भी लगा हुआ है।

समूह दिखाई दे रा है और कुछ खरीदार भी इधर उधर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।